दृश्य है दुकान स्टेशनरी की हैं यहां फोटो कॉपी भी होती हैं।

जहां बहोत सारी लाइटिंग की गई है।

यह एक साइकल के दुकान की तस्वीर है।

यह एक महावीर प्रिंटिंग प्रेस की दुकान का दृश्य है।

यहां लाइन से ब्रेडे रखी हुईं हैं।

और किट कैट चॉकलेट भी है और बहोत सारी चॉकलेट से डेकोरेशन किया हुआ है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है जिस पर बोर्ड बना हुआ है। जिस पर खेल प्रशाल लिखा हुआ है।

और कृषि महाविद्यालय इंदौर भी लिखा हुआ है।

साफ सुथरा किचन है सामने की तरफ ट्रे सजा हुआ है।